खिड़कियां दिख रही है शॉप में कुछ लोग दिख रहे है।

बहुत सारी बोरियां दिख रही है गैस की टंकी दिख रही है पेड़ दिख रहा है।

और इधर कार्टून्स वगैरह भी पड़े हुए है पेड़े दिख रहे है।

एक लड़का दिख रहा बोतल दिख रही है सूरज दिख रहा है।

एक पेड़ दिख रहा है सड़क दिख रही है पेड़े दिख रहे है।

बहोत सारे लोग चलते हुए दिख रहे है मंदिर में।